बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं बाइक खड़ी हुई है एक्टिवा खड़ी है।

इस पिक्चर में एक आंटी पेड़ों में पानी दे रही हैं और बहुत बड़ा गार्डन टाइप बना हुआ है।

साइड में ओ ओक्सीजेन सिलेंडर के पीछे ह एक पर्दा लगा हुआ है और खिड़कियाँ और एक गेट बने हुए हैं गेट बना हुआ है और अंकल खड़े --

यहाँ पर एक अ बहुत बड़ा जुलूस निकल रहा है किसी चीज़ का बहुत बड़ा और सामने बच्चे घर में से देख रहे है बहोत सारे लोग है आस-पास--

इस पिक्चर में एक बहुत बड़ा हॉल है जिसमे पंखे लगे हुए हैं।